जिम करना हमारे के लिए आवश्यक है और जिम बहुत आदमी आते हैं अपने शरीर को फिटनेस बनाने के लिए और जिम हमारे लिए जरुरी है।

बैंक एस.एस.सी. रेलवे की पढ़ाई होती है इंग्लिश जी.के. जी.एस. यहाँ बहुत बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ बहुत बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ आते --

यह एक फील्ड है यह फील्ड में बहुत सारा गेम होता है जैसे फुटबॉल क्रिकेट वॉलीबॉल जैसे गेम खेले जाते हैं और यहाँ --

बहुत बच्चे गेम खेलने के लिए आते हैं और टहलने के लिए भी आते हैं घूमने के लिए भी आते हैं।

यहाँ वो एक पंडाल बनाया गया है यह पंडाल में कुछ कार्यक्रम होने वाला है और यहां बहुत आदमी जुटे हैंऔर पंडाल देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

यह एक बहुत बड़ा घर है। यह घर देखने में बहुत अच्छा और खूबसूरत लग रहा है यह घर में बहुत आदमी रहते हैं और किराये में भी यह घर में आदमी रहते हैं।

यह एक राशन का दुकान है यहां बहुत आदमी राशन खरीदने के लिए आते हैं ये हैं चीनी चावल चाय।

और इस पंडाल को बनाने में बहुत मेहनत लगा होगा और यह दिखने में भी बहुत सुंदर है।

यह एक चाय की दुकान है यह चाय की दुकान बहोत चाय स्वादिष्ट बनाता है और टेस्टी .